एक पुतला लेडीज लड़कियों की फ्रॉक पहिना के खड़ा हुआ है किया गया है। पीछे क्यूआर कोड पे फ़ोन और भारत --

एक लड़का काले कलर की टीशर्ट और चश्मा पहने हुए है।

यहां पे बाजार लगी हुई है बाजार में बहुत से लोग अपने घरों के सब्जियां एवं फल खरीदने आए हैं।

इस गुफा में एक व्यक्ति बैठा हुआ है और एक व्यक्ति अंदर जा रहा है।

जिसमें बालकनी लगी हुई है नीचे वाली बालकनी खाली है।

जबकि ऊपर वाली बालकनी में लोहे की ग्रिल लगी हुई --

और साथ में गमले लगे हुए हैं।

और ये पीले और भूरे रंग के रंगों से --

जो कि भूरे बैगनी हरे और सफेद रंग से रंगा गया है।

इस गे इस गेट का केवल एक दरवाजा खुला है बाकी --

कोई अ म म मंच लग रहा है। यहाँ पे किसी उत्सव या समारोह के वक्त --.

और यहां पे किसी बॉडी बिल्डर का स्टिक लगा हुआ है।